अ साइड में बहुत ही बड़ा पेड़ है जो की मंदिल के सामने है।

पीछे एक घर है जो की बहुत ही बड़ा बनाया गया है और देख सकते हैं इस मैदान को बहुत ही सुंदर से बगीचे के रूप मे बनाया गया है और बहुत ही बड़ा बगीचा है।

देख सकते है बहुत ही बड़ा फूल है जो की बहुत ही मेहनत कर के बनाया गया है देख सकते है साइड में एक गाड़ी भी रखा गया है देख सकते है--

कोई लोग भिंडी के साथ घूमने आए हुए है और ये पार्क बहुत ही बड़ा बनाया गया--

ये एक मंदिर है जो की बहुत ही बड़ा बनाया गया है और देख सकते--

साइड में एक घर है जो की बहुत ही अच्छा दिखने में लग रहा है देख सकते है इस नदी के साइड में बड़े-बड़े घर भी बने है।

आप देख सकते है ये सोनी कंपनी है यहाँ पर सभी समान उपलब्ध है आपलोग यहाँ पर आके टी_वी मोबाइल जो ले सकते है।

क्लियर देख सकते है ये एक रेस्ट्रोरेंट है जो की बहुत ही अच्छे तरह से रेस्टुरेंट को बनाया गया है आप देख सकते है कई प्रकार के लाइट्स लगे हुए है जो की देखने में बहुत ही सुन्दर लग रहा है और देख सकते है रेस्टुरेंट को बहुत ही अच्छी तरह से सजाया गया है और देख सकते है साइड में एक कुर्सी भी रखा गया है।